बहोत बड़ा स्कूल दिखाई दे रहा है।

और उसके पीछे बाइक खड़ी हुई है।

यहां पर कुछ पेड़ पौधे लगे हैं।

इस फोटो में हमें एक बहोत ही सुंदर दृश्य दिखाया गया हैं।

इस फोटो में हमें एक बहोत बड़ा फार्म हाउस जैसा--

हममें दो आदमी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

जो की एक--

सामने हमें कुछ साइकल दिखाई दे रहे हैं।

बाइक खड़ी हुई नजर आ रही है।